ट्रक रोड पर खड़ा हुआ है ।

यहाँ वाल्स का कलर व्हाइट है ।

यहाँ पे आसमान का कलर भी बोहत अच्छा है यहाँ की रोड भी बोहत साफ है।

यहा पे ग्रीन कलर के पेड़ भी है बहुत सारे ।

यहां पर लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है यहां पर दो स्पीकर लगे हुए हैं एक फैन है।